इस फोटो में सामने बैठने की सीट दिखाई दे रही है काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने लिखा है धनु लक्ष्मी ज्वेलर्स ठीक है और बाहर एक लड़की खड़ी है। एक लड़का खड़ा है कुछ एक्टिवा बाइके खड़ी हैं।

एक लेडी बैठी हुई दिखाई दे रही है जिसने मास्क लगाया है।

जो जितने भी की रिक्वायरमेंट होगी उतने पैसे ये लेने आए--

इस फोटो में सामने तरबूज दिखाई दे रहे हैं।

लड़के दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहां पर--

इस फोटो में सामने लिखा हुआ है श्री साईं शुद्ध भोजनालय एंड रेस्टोरेंट --

और पंखा लगा हुआ है लाइटें लगी हैं खिड़की भी नजर आ रही है।

और शटर लगा दिखाई दे रहा है एक ब्लू कलर का दिन का समय है।

और दीवार है जोकि ब्लू कलर की दिखाई दे रही है दिन का समय है।

नीचे लिखा है वेलकम कुछ पेड़ पौधे हैं घास नज़र आ रही है।

इस फोटो में एक ना मतलब एक्टिवा नजर आ रही है कुछ बाइके के दिखाई दे रही है।

सामने काउंटर है जिसपे काफी सारा सामान रखा हुआ है।

दिन का समय है देखो सड़क पे भी काफी सारे लोग दिखाई दे रहे आते जाते।

पॉट्स फ्लावर्स नहीं होते है फ्लावर पॉट वो रखे हुए है चेयर्स है एक रेड कलर की है एक ग्रीन कलर की है।

कैप लगा रखी है सेंटा क्लॉज की यानी कि ऑफ कोर्स क्रिसमस के आसपास का ये फोटो है।

और काफी सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पीछे की तरफ--

दिन का समय एक बाइक खड़ी हुई हैं एक गेट लगा हुआ हैं।

कॉपी सी और यहां पे चेयर लगी हुई है।

सामने काउंटर दिखाई दे रहा है कुछ चेयर्स है कुछ लोग खड़े हुए है।

दूर दूर तक नडी दिखाई दे री है मिट्टी भी नजर आ री है अ और किनारों पे थोड़ी बहुत घास --